इस फोटो में बहुत सारे भगवान का फोटो है यहां पर एक चूड़ी भी पहने हुए हैं।

यह एक बहोत बड़े मार्केट का फोटो है।

टेबल भी लगाया हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी राखी हुई हैं।

घर का कलर पीला और उजला है यहां पर ऊपर में एक टंकी भी लगाया हुआ है।

यहां पर बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं।

यह एक बहोत बड़ा रूम का फोटो है रूम में एक लाइट भी लगी हुई है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ और पौधे भी हैं।

यहां पर बहुत सारे पिलरें हैं यहां पर पिलरों में बहुत सारे बलून टांगी हुई है बलूनों का कलर पिंक ब्लू और ऑरेंज है।

यह एक बहुत बड़े होटल का फोटो है होटल में बहुत बड़ा एक स्टैचू भी बना हुआ है।

स्टैचू के ऊपर एक छाता भी है और पानी भी टपक रहा है।

यह एक बहोत बड़े स्टेशन का फोटो है।

बहुत सारे आदमी हैं यहां पर एक कुर्सी भी है।

यहां पर बहुत सारी पोस्टरे टंगी हुई हैं।

यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

एक आदमी ने ब्ल्यू रंग का स्वे सूट पहना हुआ है।

और यहां पर बहुत सारे पार्टी पोपर फोड़े हुए है।

यह एक बहोत बड़ा रूम का फोटो है रूम में बहोत सारी टाइल्से लगी हुई है।

लाइटों का कलर हरा ब्लू और उजला है यहां पे बहोत सारी सीढ़ी भी--

ऊपर में बहुत बड़ा एक करकट भी है।

यहां पर एक टॉवर भी है यहां पर बहुत सारे पत्थरें भी हैं।

इसका कलर काला है टेबल के ऊपर एक फोन पर का स्कैनर भी बनाया हुआ--

यह एक बहोत बड़ा होटल का फोटो है।

यहां पर बहुत बड़ा गेट रखा हुआ है जिसका कलर भुर्रा है।

यहां पर बहुत सारे सीढ़ी भी हैं यहां पर नीचे में बहुत सारे घास फूस भी हैं।

यह एक बहोत बड़े हॉल का फोटो है हाल में बहुत सारे रिबन लगे हुए हैं जिसका कलर हरा ब्लू लाल है।

यहां पर एक टावर है उसके उधर बहुत सारे तारें हैं।

यहां पर एक नापने वाले भी रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे रिंग हैं यहां पर बहुत सारे की रिंग भी हैं।

यहां पे बहुत सारे मंदिर हैं मंदिर में बहुत सारे माले भी बनाए हुए हैं यहां पर बहुत सारे उसमें बच्चे भी चढ़े हुए हैं।

यहां पर मंदिरों का कलर गोल्डेन है।